जीवन रेखा आस्पताल है यहाँ पे जीवन रेखा बाबा श्री राम ऐसा कुछ लिखा है दवाई दुकान लिखा हुआ है यहाँ पे एक शटर एक कार खड़ी हुई है।

कुछ डमी खड़ी हुई है। नीचे कुछ शेरवानी पहनी है। एक दुल्हन का लहंगा पहनी हुई है। शर्ट्स खड़ी हुई शर्ट्स टंगी हुई है रेड कलर की ब्लू कलर की ऑरेंज येलो कलर --